चित्र में मुझे अंधेला दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे कुछ छोटे पेड़ दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे एक तालाब का पानी सा दिख रहा है।

चित्र में मुझे बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

और चित्र में मुझे अंदर आती हुई सूर्य की किरण दिख रही है।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

चित्र में मुझे महल सा दिखाई देता है।

चित्र में मुझे ओरियो के ऊपर रखे बिल्लो पे नाम ली अ लिखा रेट लिखा दिख रहा है।

चित्र में मुझे टीन से लगा छत्ता दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक किराने की शॉप दिख रही है।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

चित्र पर मुझे कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।